यहां पर बहोत ही ऊंचे ऊंचे चार पांच मंजिल ऊंचे मकान बने हुए है जो बिल्डिंग लगी हुई है बीच में एक--